इसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिस पे --

ऐसी लगा हुआ है और साइड मे एक हरे कलर का परथा भी लगा हुआ है।

इस तस्वीर में पानी दिख रहा है और उसके ऊपर चट्टाने भी --

और पीछे ए.सी. भी लगे हुए हैं दो।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा गेट है। जिसके ऊपर बहुत --

इस तस्वीर में एक बुद्धा की मूर्ति नजर आ रही है जो किसी कांच के शोकेस में रखी हुई है।

और कुछ दरवाजे खिड़कियांँ भी नजर आ रहे हैं। एक पंखा भी लगा हुआ है। ऊपर और जमीन पर कुछ कागज भी पड़े हुए हैं।

और पीछे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

इस जिम में बहुत सी एक्सरसाइजेस की मशीन रखी हुई है और सामने जो मशीन है वो पीले रंग की है और वहा पर बहुत से कांच भी लगे हुए है।

इस तस्वीर में एक दुकान है जिस दुकान के बाहर बहुत से लोग काम कर रहे हें और सामान भी बहुत फैला हुआ है।

और एक खिड़की भी नजर आ रही है और एक दरवाजा भी और यहाँ पर दो आदमी भी खड़े हुए हैं।

और उस स्टेडियम के बाहर एक बोर्ड लगा है। जिस पे लिखा है बल्लभ पंत स्पोर्ट स्टेडियम ।